इ बॉक्सिंग वाला लोग बाटे। पहलवानी करे वाला लोग बाटे।

ओ बहोत कुछ बहोत चीज रखल बाटे। देखत में बहोत अच्छा लागत बाट।

बहोत बड़ी खबर देवता के। बहोत ।

इ औरत सब मूर्ति ज्योति लगाकर पूजा करत हन।

सब्जी के दुकान बाटें। गोभी केला --